का हॉल जो काफी बड़ा है वहाँ पे जो है कुछ किया हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे ग्रीन कलर से डेकोरेट किया गया है वह काफी सुंदर लग रहा है और ये ऑफिस जो है काफी पॉश एंड क्लीन है।

दिए गए चित्र में हम देख पा रहे है कि यह स्त्री करने की मशीन है जहाँ पे हमे जो एक साड़ी डालते हुए नज़र आ रहे है वो साड़ी का कलर जो है नीले कलर मे दिया गया है वहीं पे जो उसका बॉर्डर जो है गोल्डन कलर में लगा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ जो मशीन जो है सफेद कलर की वहाँ पे जो उसे दो लोगो ने हाथों मे --

ये जो हमें चेयर का जो कलर दिख रहा है वह ब्राउन कलर में दिख रहा हैवहाँ पे जो कुछ लोग बड़े लोगों की दीवाल पे फोटो लगी हुई नजर आ रही हैं।

दिये गये चित्र में हम देख पा रहे हैं क्या मुझे वहां पर की दुकान दी हुई नजर आ रही है इसके अंदर हमें उसका काफी बड़ा पैनल नजर आ रहा है वह वीडियो में दुकान के सामने--

ये चित्र में हम देख पा रहे हैं हमे जो ये काफी बड़ी जो मस्जिद की फोटो देखने में नजर आ रही है इसमें जो प्रवेश द्वार है वह अभी बंद है उसमें ताला लगा हुआ नज़र आ रहा है।

उसके वॉलपेपर में जो हमे काफी सारी जो डिजाइन बनी हुई नजर आ रही है जो ब्राउन और रेड कलर में जो काम की गयी है मस्जिद की जो है सफेद कलर से पेंटिंग की गयी है उसके जो फूल है वह काफी बड़े हैं और काफी अच्छी लग रही है हैं।